और इसके यहां पर एक साइकिल का और एक स्ट्रेचर का निशान दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर लाइट पंखे छोटे छोटे बच्चे--

रेड कलर के झंडे और एक इंडिया का झंडा लगाया गया है और एक--

अलमारी जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है जो की एक बॉक्स के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

वृद्ध राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान परिवार कल्याण संस्थान पटना जोकि एक डॉक्टर --

का हॉस्पिटल दिखाया गया है और--

डेकोरेशन बहुत ही अच्छा कर रखा है।

यहां पर रखे हैं जिसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं।